यहाँ पर एक टैक्सी ऑटो हैं। यहाँ पर ऑटो टैक्सी का मेला लगा ही रहता है यहाँ पर लोग आते रहते है।